बिस्कुट पैकेट टंगे हैं। कुरकुरे के पैकेट टंगे हैं बोहोत सारे क्यू आर कोड भी रखा हैं। एक दुकान के बाहर एक टेबल लगी हैं। कोल्डड्रिंक कि बॉटल और ट्रे भी रखी हैं।

फ्रिज के अंदर बौटले रखी हैं।